जिससे की वह अपने घर के लोगों को परिचित कर सकें।

डीजल अनेक क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी तथा सहायक रहा है ।

यह कोई लॉज मालूम पड़ता है।

यह सरकारी दफ्तर जैसा की आप देख पा रहें हैं। यहां पर मोटरसायकल और पेड़-पौधे और बिल्डिंग नजर आ रही है।